आप सभी को रखे गए हैं लाइन से लाइन ।

और बीच में पानी के स्विमिंग पूल जैसन बनाए गए हैं उसमें पाइप भी गिराए गए हैं और ऊपर में झरना का तरह गोला चक्र जैसन है।

यहां पर सीट जैसन भी है और बहोत सारे कुर्सी रखे गए हैं और बै रखे गए हैं।

बहुत सारे खिड़की हैं और गेट सब दिख रहे हैं और बहुत बड़े हैं और नीचे दिख रहा है कि कार लगी हुई है।

गमले जैसे कुरा रखने वाला है और सीरी भी दिख रहे है लोहा के लगे हुई है ऊपर पोस्टर लगा हुआ है ब्रेंच से दिख रहा है कुछ लड़कियाँ हैं ऊपर दिख रही है।

यहां पे एक बहुत बड़ा हाल है जिसमें बहुत सारे ब्रेंच लगा हुआ है और एक बरा सा--

एक सीढ़ी है आस नीचे साइकल भी है और पाइप सभी दिख रही है घास भी दिख रहे हैं।

लाइट उट पंखा उंखा है लगे हुए।